और यहां पे दीप जला हुआ है।

और पीछे गाड़ियां हैं और यह गार्डन है एक तरह का -----

और यहां औरत लोग भी हैं यहां पे कोई गाड़ी लेके आया है कोई साइकिल लेके -----

ये शायद मेरे ख्याल से होटल है और ये रिक्शा है।

ये एक गार्डन जगह है और यहां पे येलो कलर का फूल पीला कलर का फूल प्रेजेंट है।

ब्राउन प्लस क्रीम कलर है और यहां पे बहुत सारे पेड़ बन दिख रहे हैं।

और यहां पे ग्रीन कलर का शर्ट में आदमी उधर जा रहा है ग्रीन कलर का --

यहां पे लुंगी है और यहां पे गमले में पौधे हैं और वहां पे गंजी है।

और यहां पे नारियल का छिलका है मच्छर दानी ढंका हुआ है।